यह एक मंडी है। कृषि उत्पादन मंडी समिति मंडी में लोग किसान अपनी जो भी फसल उगाते है वो इस मंडी में लाके बेचते हैं और इस मंडी में --

अ पाँच युवतियाँ भरतनाट्यम कर रही जो देखने में बहोत ही बढ़िया है और भारत की ये बहोत ही लोकप्रिय नृत्य है।

यह एक पार्क है जो काफी बढ़िया और काफी सुंदर पार्क है। यहाँ प हर एक प्रकार के पेड़-पौधे हैं एवं फूल वगेरा भी लगाए गए है जो ये पार्क को बहोत ही सुंदर और आकर्षिक बन आकर्षक बनाता है।

आलू की सप्लाय की जाती है और यहाँ के किशान भारी मात्रा में आलु की उपज करते हैं और अपने जीवन का पालन करते हैं।

खुला रहता है और चोबीसो घंटे यहाँ पर डोक्टर उपलब्ध होते हैं और यहाँ पे अच्छा इलाज और कम पैसों मे बहोत बढ़िया इलाज होता है।

यह एक बुक स्टोल है जो काफी बढ़ियां और काफी बड़ा बुक स्टोल है। यहाँ पर हर एक --